मिठाई है ये तस्वीर में --

ये तस्वीर हम देख रहे हैं ये घाट के हैं।

तस्वीर है। एक बिल्डिंग की तस्वीर है।

समुद्र काफी दूर तक है ।

और यहाँ पर पांच कलर है साड़ियों के साड़ी जो होती है बनारसी।

जिस पर लिखा है मे आई हेल्प यू --

जो तस्वीर है काफी खूबसूरत और उच्च तस्वीर है।

इसमें कॉलम भरे हुए हैं।

और ईंटों की चुनाई चल रही जो मजदूर और कारीगर हैं वो एक चौखट फांस रहे हैं कमरे की और काफी --